शोरूम पे और यहाँ पोस्टर भी लगा है इसमें कुछ लिखा भी है कांच की शोरूम बनी हुई है यहाँ पे बहुत सारी रंग-बिरंगे कपड़ा भी है।

मुझे यहां पर बहुत सारे हल दिखाई दे रहे है केले आ--।